के समक्ष ए एक एंट्री गेट लगा हुआ है उसके ऊपर भी डिजाइन है कुछ अंग्रेजी में कुछ लिख दिया गया है।

बहोत सारे मोटरसाइकिलों के ऊपर बैलून लगाए गए हैं लाल और सफेद रंग के--

किसी बंदरगाह की वीडियो है जहां पे सामान लोड किया जा रहा है।

पे तेल भरा जा रहा है जिसमे दिखाया जा रहा है कि ट्रकों पे तेल भरा जा रहा--

बहोत सारी हरियाली भी दिखा दिखी जा रही है।

बहोत सारे हरे भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर ही बिजली की तार है।

लाइटें लगाई गई है सजाने के लिए उजाला करने के लिए।